और इन्होंने कितनी सारी माला बना रखी है देखो। सफेद फूल है और पीला है और ऑरेंज है और नीला भी लाल है। अच्छा लग रेया ।

और देखो कमरे में बेड भी कितना अच्छा डाला हुआ है जो कि काफी सुंदर दिख रहा है।

ये का स्टेज है जो कि काफी अच्छा लग रहा है देखने में।

इस बंदे की कटिंग कितनी अच्छी है।

ये हमारे यहाँ पर बहुत पुराने एरिया में है।

और जो कि बहुत जल्दी प्रोसेसिंग चलती है इसकी नेटवर्क भी अच्छे हैं इस पे।

ये जो है देखो बैगनी कलर का ये पूरा कितना अच्छा लग रहा है ये कलर में ये गुलाबी कलर का भी।

और कुर्सी भी अच्छी है बैठने की काफी व्यवस्था है।

और कितने टेस्टी है यार ये खाने में भी कितना मजा आ रहा है यार इसको।

जहाँ पे हमारा ऑटो खराब हो गया था।